ये देखिये पुणेके बस स्टेशन पे ये लोग खड़े है। ह और बस मे बेठ रहे है।

ये देखिए ये आपको जो दिख रहा ये पेरिस हॉल है ये जो पेरिस हॉल है ये कहा स्थित है ये स्थित है पुणे मे।

ये पुणे का पेरिस हॉल है जिस के नीचे एक स्कूटी खड़ी हुई है उसके साइड मे एक पेड़ लगा हुवा है काफी अच्छा दिख रहा है।

देखिए ये जो बस है जो की उसका नेम हैं एम_एच ऐटीन बी_जी वन थ्री सिक्स सेवन ।

ये जो पुणे मे खड़ी है और ये जो बस यही से जाती है वापस यही आती है ये पुना पुणे मैं जो बस स्टेशन है यही से बस निकल --

ये जो हम को दिख रहा है ये क्या है एक मॉल है और जहा पे ये काफी अच्छा दिख रहा है।

ये क्या है ये पुने मे कार सर्विसिंग सेंटर है यहा पे ये कार सर्विस वगैरा होती है ये देखिए गाड़िया खुली डली हुई है यहा पे --

एक कार शायद ये सैंट्रो और एक शायद ब्लोरो ये जो कार हे इसका सर्विस कीया जाएगा और ये जो पुणे मे हो रहा --